गांधी चिल्ड्रेन पार्क हैं जहां बच्चे बूढ़े आदि सब आते है और मजे करते एंजॉय करते है।

यहां टीचर लोग अपना अपना काम कर देख रहे हैं --

गाइस यहां बच्चे स्कूल से आ रहे हैं वो दिखा रहें--

जहां सभी बच्चे आते हैं तो ग्राउंड मस्त खाली सा है बड़ा सा है तो बच्चे सब खेल रहे--

और अंदर इवेंट्स हो रहा है सेल लगा है शायद और बहुत ही अच्छा डेकोरेट हुआ है और पता नहीं कौन सा क्या है।